यह तस्वीर एक चर्च की है।

यह तस्वीर एक पार्क की है जिसमें छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं।

यह तस्वीर एक स्कूल की है।

तस्वीर एक कार शोरूम से बाहर की ली गई है।

दीवार पर हमें अपनी सांस्कृतिक चीजें दिखाई दे रही हैं।

इसमें रवि फोटोग्राफी और केंद्रीय अकादमी शामिल है।

यह तस्वीर एक पेट्रोल पंप की है जिसमें हमें नजर आ रहा है कि एक युवक पेट्रोल भरवाने आया है।

दीवारों पर करीने से तह कि गई साड़ियां लगी हुई हैं जिनमें कई तरह के रंग और पैटर्न दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें दो लोग दिखाई दे रहे है।

यह दृश्य एक रात का दृश्य है।

मंदिर के ऊपर रखे गए गुंबद हमें पीले रंग के नजर आ रहे हैं।

तस्वीर में हमें एक पुरूष एक छोटा सा पुष्प जो कि सफेद रंग का है वो लिए हुए हमें नजर आ रहा है।

ये तस्वीर डालीगंज लखनऊ में स्थित है।

रंग बिरंगे फूल दिखाई दे रहे हैं।

ये जगह हाउस ट्वेन्टी वन महानगर लखनऊ में अ स्थित है।

यह तस्वीर भारत की एक निजी डेरी कंपनी की है।

ये एक नर्सरी की तस्वीर है जिस--

चटाई भी बिछी हुई है।

और इसको उन्नीस सौ अनठानबे में बनाया गया था और यह महानगर लखनऊ में स्थित है।

भारत का दूसरा गवं सरकार के द्वारा चलाया गया पेट्रोल पंप है।

ये जो जगह है इसका नाम है राजघाट ये दिल्ली के किले में स्थित है।

इसको महात्मा गांधी की याद में बनाया गया है।

इसमें हमें एक खड़ी हुई ट्रेन नजर आ रही है।

और ये जो अ सेंटर है ये इंडिया में है मतलब इंडिया में स्थित है।

बसें अलग अलग आकार की हैं।

बसों के पास कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे जोकि कर्मचारी या यात्रीगण है।